व्यक्ति ने फूलों की माला पहन रखी है और एक चेयर और टेबल फ्लावर पॉट भी दिख रहा है घर काफी सुंदर सजाया हुआ है।

और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं।

वो साइड में बिल्डिंग और लाइट भी न दिख रही है।

जिसमें बहुत छोटे छोटे पौधे ग्रीन मैट के अंदर दिखाई दे रहे हैं और साइडों में--

यह एक ज्वेलर्स की दुकान है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जिसके सामने एक खंभा लगा हुआ है और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी खड़े है।

बीच में एक टेबल भीं दिख रहा हैं।

पंजाबी में उड़ा ओट लिखा हुआ है।

साइड में कपड़ों की दुकान भी दिखाई--

यह एक काफी पुरानी बिल्डिंग दिख रही है जिसमे बहुत गंदा पानी भरा हुआ है।

गंदे पानी के सामने व्हाइट कलर के बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और जिसके बैक में ग्रीन कलर के पेड़ भी लगे हुए हैं।

जिसमें पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

है जिस पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।

एक आदमी भी खड़ा है साइड में पेड़ दिखाई दे रहा है और इसके बैक में--

यह एक डांसिंग रूम हैं जिसमें एक टीचर्स और कुछ बच्चे दिख रहें हैं।

ओर काफी ने व्हाइट कलर के पहने है।

और काफी सारी नोटबुक भी दिख रही है।

जिसमें एक ठो बैट दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है और--

और दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं एक साइकिल भी दिख रही है।

सीमेंट की कुछ बोरियां भी दिख रही है।

और सड़क पर किनोरी येलो और ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

साइड में एक तार भी दिखाई दे रही है उसके पीछे पेड़ पौधे घास भी दिखाई दे रहे हैं।